नमस्कार introduction to gchempaint के tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
gchem paint के बारे में
उपयोग और लाभ
संस्थापन एक नयी file खोलना
menubar menubar toolbar toolbar और status bar status bar
हम निम्न के बारे में भी सीखेंगे
display area display area
document की विशेषतायें
tool box उपयोग करना और
extension gchempaint के साथ drawing सेव करना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए
viii standard तक chemistry के मूलतत्व
ubuntu सॉफ्टवेयर center उपयोग करके gchempaint को आसानी से संस्थापित किया जा सकता है
ubuntu सॉफ्टवेयर center पर अधिक जानकारी के लिए
कृपया हमारी website पर ubuntu लिनक्स tutorials पर जाएँ
gchempaint क्या है
gchempaint two डायमेंशनल chemical structure editor chemical structure editor है
यह multiple document interface multiple document interface रखता है
gchempaint आपको अनुमति देता है
two डायमेंशनल chemical structures बनाने और दर्शाने की
templates drag और drop करने की
bonds की चौड़ाई angle और लम्बाई बदलना
chemical calculator उपयोग करके compounds के मॉलीक्यूलर weight molecular weight का आंकलन करना
gchempaint निम्न में सहायक है
chemical structures का आसान दृश्य
to डायमेंशनल structures को three डायमेंशनल structures में बदलना
structures का magnification magnification
परमाणुओं का automatic और manual assignment
सबसे पहले देखें कि नयी gchempaint application कैसे खोलें
dash home dash home पर click करें search bar प्रदर्शित होता है search bar में type करें gchempaint
gchempaint icon पर click करें
हम gchempaint application terminal से भी खोल सकते हैं
एकसाथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर terminal खोलें
type करें gchempaint और enter दबाएं
gchempaint application खुलती है
एक विशिष्ट gchempaint window इस प्रकार दिखती है
यह मेन्यूबार है
अन्य window बेस्ड एप्लीकेशन की तरह ही gchempaint एक आदर्श menubar रखता है
मेन्यूबार menu items रखता है जैसे file edit view tools windows और help options
toolbar सर्वाधिक उपयोग हुए commands आईकन की तरह रखता है
यहाँ एक new file खोलने के लिए icons हैं
मौजूदा file खोलें
file सेव करें औए file print करें
यह display area है
display area file के structures और विषयवस्तु को दर्शाता है जो हम draw और edit करते है
display area के अंदर टूलबार से हम tools को drag और drop कर सकते हैं
स्टेटसबार वर्तमान gchempaint क्रिया की जानकारी के bar में दर्शाती है
यह menu items की प्रासंगिक जानकारी के बारे में भी दर्शाता है
अब मैं document की विशेषताओं के बारे में समझाउंगी
document properties window खोलने के लिए
file menu पर click करें
properties पर जाएँ और इस पर click करें
document properties window खुलती है
इसे अधिकतम बढ़ाने के लिए मैं document properties window को drag करुँगी
document properties window निम्न क्षेत्र रखती है
titledocument का टाइटल प्रोपेन propane type करें
author s nameauthor का name madhuri type करें
emailइसे खाली छोड़ दें
historyयह क्षेत्र document की creation date creation date प्रदर्शित करता है
यह document की revision date revision date भी प्रदर्शित करता है
इसका मतलब यह document की अगली संशोधित date भी प्रदर्शित करता है
themeइस क्षेत्र में gchempaint रहने दें
commentscomments क्षेत्र में हम document से सम्बंधित text को जोड़ सकते हैं
compound का name और इसका formula enter करें
propane ch3ch2ch3
window बंद करने के लिए close button पर click करें
आगे toolbox के बारे में सीखें
toolbox के पास भिन्न tools के लिए buttons हैं
toolbox active document window के साथ प्रदर्शित होता है
अब toolbox buttons उपयोग करके structures बनाते हैं
सबसे पहले propane का structure बनाते हैं
propane है ch3ch2ch3
carbon chain बनाने के लिए tool box से add a chain add a chain tool का उपयोग करें
add a chain tool पर click करें
और फिर display area पर click करें
display area पर carbon chain बनी है
chain की ओरीएन्टेशन बदलने के लिए
add a chain tool पर click करें
display area में chain की orient बदलने के लिए left mouse button को दबाएं और पकड़ें
left mouse button को तब तक न छोड़ें जब तक chain की दिशा निश्चित न हो जाये
दिशा निश्चित होने के बाद left mouse button छोड़ दें
हम देखते हैं कि carbon chain बन गयी है
अगर हम display area पर click करते हैं तो chain की लम्बाई और ओरीएन्टेशन निश्चित हो जाती है
अब chain पर प्रत्येक स्थान पर परमाणू प्रदर्शित होते हैं
यहाँ हमारे पास परमाणुओं को प्रदर्शित करने के 3 स्थान हैं
पहले स्थान पर right click करें
एक submenu खुलता है
atom select करें और परमाणुओं को उस स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए display symbol पर click करें
इसी तरह सारे स्थानों पर परमाणु प्रदर्शित करें
right click करके atom select करें
display symbol पर click करें
यहाँ propane का structure बना है
आगे उसी window पर pentane का structure बनायें
add a chain tool पर click करें
फिर display area पर click करें
chain की लम्बाई बढ़ाने के लिए left mouse button को पकड़ें और cursor को खींचें
ओरीएन्टेशन को वांछित दिशा में बदलें और left mouse button छोड़ दें
अब सारे स्थानों पर परमाणुओं को प्रदर्शित करें
यहाँ हमारे पास परमाणु दर्शाने के लिए 5 स्थान हैं
पहले स्थान पर परमाणु दर्शाने के लिए right click करें एक menu खुलता है
atoms select करें और फिर display symbol पर click करें
इसी तरह परमाणुओं को सारे स्थानों पर प्रदर्शित करें
यहाँ pentane का structure बना है
अब file को सेव करें
file menu पर click करें save as select करें
save as dialog box खुलता है
file type के लिए drop down arrow पर click करें
कई प्रकार के सेव formats दिखते हैं
2d chemical structure select करें
file का name propane gchempaint type करें
और सेव button पर click करें
gchempaint extension के साथ file सेव हुई है
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
gchempaint के बारे में उपयोग और लाभ
संस्थापन
एक नयी file खोलना
मेन्यूबार toolbar और status bar
हमने निम्न भी सीखे
display area
document की विशेषतायें tool box उपयोग करना और
extension gchempaint के साथ drawing सेव करना
एक नियत कार्य की तरह मैं चाहती हूँ कि निम्न कार्य करें
1 nhexane और noctane के structures बनायें
2 ओरीएन्टेशन बदलें
3 प्रत्येक स्थान पर परमाणु प्रदर्शित करें
नियत कार्य का output इस प्रकार दिखना चाहिए
इस url पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team:
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलती है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
अधिक जानकारी का लिए कृपया contact @spokentutorial org को लिखें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
यह भारत सरकार के it it आर डी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्र्रीय साक्षरता mission द्वारा समर्थित है